ईटा है कुछ फत्थर --

कोचिंग है पढ़ते है विद्या निकेतन नाम है बहुत बच्चे हैं सारे पढ़ते हैं।

दाढ़ी बाल कटा रहा है ।